और सभी का ड्रेस अलग-अलग है और पीछे व्‍हाइट कलर की दीवार है गेट बंद है बीने हु।

और दो तिन चार खिड़की खुली है और साइड मे तार है सीसा का आगा एक आदमी खडियो है।

और दुकानदार बैठा है इनने साईड में लाईट चस री है और रंग बेरंगी माला ही माला टंग रही है।

साग कपड़ा की दुकान है। पौधा उग रा हैं।

यो एक टाउन हॉल है जका को जका को नाम है कमला टाउन हॉल ब्लाइंग का रंग सेफ और ई पर गेट खुला है।